हां पर सामने बहोत तरह की बाल्टीया पड़ी है रबड़ की और कलर कलर की है।

और नीचे पिलर्स निकाले हुए हैं और ऊपर कुछ बने हुए हैं।

यहां इधर एक बस खड़ी है बस के अंदर एक आदमी जा रहा है जिनके एक हाथ में बैग है और एक पीछे बैग डाला हुआ है।

यहां पर एक दुकान बनी हुई है चौधरी किराना और फैंसी स्टोर की--

यहां पर दो कूलर पड़ी है सेम सेम कलर के और सेम सेम साइज के ऊपर कूलर की तार है वो बंधी हुई है।